हरी मिर्च दिखाई दे रही है एक व्यक्ति हरी मिर्च को--

यह बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में ऐसा लग रहा है जैसे कोई शादी का प्रोग्राम हो बहुत सब --

एक मकान है उस रिजॉर्ट उसके रिजॉर्ट साथ--

का पशु आहार का कट्टा रख रहे हैं और पास में पशु आहार के कट्टे भी रखे हुए नजर आ रहे है एक पास में दुकान नजर आ रही है।

भी हैं दो तीन लड़कियां वो प्रार्थना बोल रही है एक ढोल पड़ा है।

और ले रहे हैं सामान को एक बच्चे ने सिर पर कुछ चक रखा है एक दो --

ये एक लाइट लगी हुई खंभे पर--